अगल बगल पेड़ पौधे लगाए गए है जो हरे रंग के पत्तियाँ है पानी बहुत तेजी से बेह रहा है जिसके ऊपर खड़े है उसके नीचे चारा है।

सामने एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जो भूरे रंग की है और बाहर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है जो काले कलर की है बाइक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ है कुछ लोग पैदल जा रहे हैं ।

कुर्सी पे तीन डॉक्टर बैठी हुए है एक खड़ा हुआ है एक लड़की भी बैठी हुई है जो सफेद रंग का ड्रेस पहनी है सामने कुछ टेबुल पे दवाई रखी हुए हैं।

जो मसाला गाजा जा रहा है और मशीन से मसाला को गासा जा रहा है एक आदमी खड़ा है जो मसाला को बराबर कर रहा हैं ।

सामने एक गाड़ी खड़ा हुआ है जो लाल रंग की है बग़ल में एक शटर लगा हुआ है जो भूरे रंग की है ऊपर के साइड पे पोस्टर लगा हुआ है चपके हुए है ऊपर छतरी लगी हुई है जो कत्थे रंग की है।